बहुत सारे व्यक्ति लोग दिखाई दे रहे हैं।

बे बहोत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं।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

बहुत सारे खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं।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

टिशू पेपर भी दिखाई दे रहे हैं दीवार में ए_सी लगाया हुआ है।

वाला पाइप भी दिखाई दे रहे है जो कि नाले में पानी गिर रहा है।

कुर्सी में व्यक्ति लोग बैठे हुए है।

यहां पे बरांडा का दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

का दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बिहुल का दृश्य दिखाई दे रहे हैं और सारा कुर्सी रखा हुआ है।

दो गेट में शटर लगाया हुआ है शटर का कलर लाल है।

ढोलक भी दिखाई दे रहे है कैसिओ दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे बल्ब दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग्स में टंकी भी दिखाई दे रहे हैं।

गली में खिड़कियां भी दिखाई दे रही है बगल में स्टर लगाया हुआ है।

बिजली का तार भी दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग में सोलर प्लेट लगा हुआ है दीवार पे लिखा हुआ इंडियन ऑयल ।

बनाता हुआ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

पे रूम का दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

बड़े का पलंग भी दिखाई दे रहे हैं।

दीवार कलर सफेद है और लाल है।

बहोत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रहे हैं घर का कलर सफेद है।

दीवार भी दिखाई दे रहे हैं।

पलंग भी दिखाई दे रहा है और कुर्सी पर दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे रैक में कपड़े रखे हुए हैं।

खिड़की में परदा लगाया हुआ है।

और बाइक भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे कुर्सियाँ दिखाई दे रहें हैं लाल कलर का कारपेट बिछाया हुआ है।

बहोत सारा घर में डेकोरेट किया गया है बहोत सारा बल्ब जल रहा है।

मिक्सचर इत्यादि रखे हुवे हैं गेट में शटर लगाया हुआ है।

रूम का दृश्य दिखाई दे रहे हैं दीवार में कुछ लिखा हुआ है।

दिखाई दे रहे हैं दिन में पानी भी दिखाई दे रहे हैं।

ब्लू कलर के कुर्सी दिखाई दे रहे हैं और ऑरेंज कलर के कुर्सी दिखाई दे रहे--